यहां एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें विजय पुस्तक भंडार लिखा हुआ--

जीना भी है जीने पर एक टंकी रखी हुई है।

और इसमें बोहोत सारे आदमी भी खड़े हुए हैं।

इसमें बहोत सारी ट्रक भी खड़ी हुई है।

इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जो पीले कलर का है जहां इंजीनियरिंग वर्क्स लिखा हुआ है।

इसमें बहोत सारे पेड़ लगें हुये है।